पीला रंग का है और वहां एक अअ आर्च भी है और ऊपर सेएए अनिल नील रंग जैसे आकाश दिख रहा हैं।

पेट्रोल फिलिंग कर रही है और वहाँ पिल्लर्स का कलर लाल रंग का दिख रहा है और वहाँ तो गमलें पे भी पौधा दिख रहा।

बिल्डिंग अह उम थ्री स्टेयर्स दिख रहा है और वहाँ ग्रिल सब कुछ दिख रहा है।

खड़ा होके यह सब उम बाइक्स को देख रहा है एक आदमी हेलमेट पहना हुआ है और वो आदमी वाइट शर्ट पहना हुआ--

और उस बिल्डिंग के पीछे और एक बिल्डिंग भी दिख रहा हैं वहां तो एक नीम का पेड़ भी बढ़िया पेड़ भी दिख रहा हैं और वह एक करंट पोल भी दिख रहा हैं।

गार्डियंस है इसका तो ज्यादा फीज ले लेते हैं ये लोग यहां तो ग्रीन कलर का बोर्ड ऊपर दिख रहा है।

वहाँ तो कुछ लोग बैठा हुआ है वहाँ पे उम पीला रंग का एक छोटा सा बिल्डिंग भी दिख रहा है और वहाँ खेत--

और यहाँ तो ऑरेंज कलर का पिलर्स बढ़ियां पिलर्स है यहाँ तो मिशनरी भी है कुछ और वहाँ एक टेबुल भी दिख रहा --

यह तो एक जिम है यहाँ तो जिम की एक्सरसाइज करने के लिए ज्यादा तरह की अब उम्म सामान दिख रहा है वेट लिफ्टिंग का--

है और वहां पेड़ पौध ज्यादा दिख रहा है। ये तो खाली प्लेस है। स्कूल की प्ले प्लेग्राउंड है ये और वहां छोटा बेड़ा--

और यह तो यह बिल्डिंग तो ज्यादा पुराना जैसे लग रही यहाँ तो आयरन का ग्रिल्स और गेट भी दिख रहा है।

वे बात करके ऐसे ही चल रहे हैं और और और तीन लोग वे ऐसा चल रहा है यहां तो गा बाइक्स ज्यादा बाइक्स रुका हुआ है और--

आ नींबू का भी पीस है और यहाँ इसमें फोर्क और चम्मच भी है यह प्लेट तो काला रंग का प्लेट है यह टेबल कुछ बिल्कुल --

और यहाँ एक अ राउंड टेबल जैसी है और वो तो ब्लू कलर का दिख रहा है और कुछ बॉक्सेस में दिख--

ज्यादा बढ़िया बिल्डिंग हैं यहां तो एक बिल्डिंग पिंक कलर का बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग क्रीम कलर और ऑरेंज कलर का बिल्डिंग है और एक लाल रंग का बिल्डिंग है।

ये तो ज्यादा अच्छा दिख दिख रहा है यहां तो पेड़ पौधा ज्यादा दिख रहा है यहां गमले पे पौधा भी ह--